यहां एक काउंटर भी लगा हुआ है और काउंटर के ऊपर बारियां बनी हुई हैं।

अंदर बहुत सारी लाइट जग रही हैं और इसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर एम_आर_एफ --

अपोलो लिखा हुआ है कई सारे टायर्स बने हुए है।

और इस जगह पर एक मशीन बनी हुई हैं।

सामने दो शॉप बनी हुईं हैं और इसके ऊपर एक--

यह एक गेरेज बना हुआ है और यहां एक कार खड़ी हुई है।

और यह बहोत ही सुंदर लग रहा है।

और इसके अंदर बहुत सारे डेकूरेशन की हुई है यह पिंक कलर के पर्दे लगे हुए--

फोटोस लगी हुई है और यहां बैठने के लिए भी सीटिंग एरिया है।

इसके ऊपर एक बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर--

बहुत सारे सुंदर-सुंदर बड़े और छोटे गमले पड़े हुए हैं और उनके बीच में फूल भी उगे हुए हैं।

और इस कुर्ते पजामे का कलर क्रीम कलर है और इस क्रेन के बहुत मोटे मोटे टायर भी हैं।